मग्स पर डेकोरेशन टंगा के अच्छा किया गया है ये बोहत अच्छा है फैमिलीज़ के आउटिंग के लिए।

स्टेज में भी सोफा है जोकि सफ़ेद रंग का है और सजावट भी बोहोत सुन्दर फूलों से की गयी है और कार्पेट जो है वो सुनहरी और हरा रंग का दिख रहा है।

और ये है योगा और योगा है कीर्ति योगा और बहोत महिलाएं लड़कियां बैठ के योगा कर रही हैं।

सब ने मारून या लाल रंग के कपड़े पहने है टीचर करेक्सन कर रही है और बता रही है की कौन सही है और कौन गलत।